इसके आसपास हरे कलर की छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ बिजली के खंभे भी है।

नीचे कुछ सामान भी रखा हुआ--

जिस पर दो पिल्लो रखे हुई हैं।

जिस जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

ये सूरज के सामने खड़े हुए हैं।

इस फोटो में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और मटका रखा हुआ है। मटकी के ऊपर एक गिलास है।

इस फोटो में हमें दो मंजली मकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें सामने बहुत सारी कुर्सी दिखाई देरही है।